इस तस्वीर में हमारे को एक जुलूस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है या इसको हम नगर भी कह सकते हैं।

इसमें हरे रंग की टेबल लगी हुई है साथ मे पीले रंग की एक टेबल के साथ चार कुर्सीयां लगी हुई है जो हमारे को दिखाई दे रही हैं बहोत अच्छे से ये मैनेज कर रखा--

सामने मारे को पिक्चर में एक दांतों का हस्पताल दिखाई दे रहा है जिसका नाम है रूहिल दातों का हस्पताल इनकी डॉक्टर है डॉक्टर योगिता सांगवान ।

जिनका आज कल बहोत ट्रेंड है और घर की डेकोरेशन में हमारे बहोत काम आती है शायद एक महात्मा बुद्ध की हमारे को दिखाई दे रही।

सामने जो मेरे को दिखाई दे रही है बहुत सारी लाइटिंग दिखाई दे रही है और नीचे इसके सर्कस चल रही है।

इस पिक्चर में हमारे को एक दुकान की नई नई ओपनिंग हुई हैं वो दिखाई दे रही है।

ये जो हमारे को सीन दिखाई दे रहा हैं एक रेलवे स्टेशन का सीन है इसमें दो पटरियां दिखाई दे रही हैं।

यहां पे हमारे को सामने एक नदी दिखाई दे रही है जो बहोत बड़ी नदी है और पहाड़ भी दिखाई दे रहे उस नदी के पीछे--

यह एक हमारे को मेडिकल स्टोर दिखाई दे रहा है यहां पे बहुत तरह की दवाइयां रखी हुई हैं सामने कुछ एल_जी का टी_वी रखा हुआ है।

तो शायद दुकानदार ने खरीदा होगा और अपनी दुकान पर रख लिया होगा जब वो घर जाएगा तो इसको ले जाएगा।

इस हॉस्पिटल को कलावती भवन के नाम से भी जाना जाता है।

सामने मेरे को एक ओपन पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें पार्टी के लिए सारी सजावट कर रखी है इसमें लाल और सफेद रंग के बैलून लगाए हुए है।

और सामने मेरे को बड़े बड़े झूले दिखाई दे रहे हैं जो सब पानी के अंदर लगे हुए हैं गर्मियों मे ये बहुत अच्छे लग--

ये एक रोड साइड की पिक्चर है जहां से गाड़ी जा री है।